जहां पे एक से ज्यादा दफ्तर जालंधर का बोर्ड लगा है।

और एक आदमी ने साइकल इनको पकड़ा है।

साथ में कुछ ट्रक नजर आ रहे हैं और नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं।

जहां पे कोई स्टूडेंट काम कर रहे हैं।

और जो टेबल हैं आगे ग्रे कलर के हैं।

टेबल पे इनका सामान जो बिखरा पड़ा है।

उसके पास एक लाल रंग का डाला पड़ा है।

एक आदमी की जेब में फोन नजर आ रहा है।

एक और आदमी है जिसने जेलो टी शर्ट पहनी हुई है।

सामने एक वाइट ब्लू सटूल नजर आ रहा है।

और एक अनमोनियम की सीढ़ी पड़ी हुई है।

वो जो अपनी इटालिक ग्रे कलर की है।

जहां पे एक पेट्रोल पंप है।

जहां पे एक गाड़ी खड़ी हैं कुछ हरे रंग की ग्रीनरी नजर आ रही हैं।

और ऊपर जो लाइट जग रही हैं।

इसपे बैक साइड थोड़ा एक आदमी नजर आ रहा है।

एक लड़के का ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है उसका चेहरा कवर किया गया है।

साइड पे एक शाॅप भी हाफ जो नज़र आ रही है।

तथा सामने कोई भी विषय में लिखा हुआ है।

सामने एक छोटा पंखा लगा हुआ है।

जहां पर दी केयर मास्टर लिखा हुआ है।

तीन टायर की लाइन बनी हुई हैं।

काफी दूर तक पानी दिखाई दे रहा है।

साइकल पे एक लड़का बैठा है उसने एक टोपी पहनी हुई है।

सामने रेड कलर के पोस्टर लगे हुएं हैं।

एक लेडिस ने फिरोजी सूट पहना हुआ है।

जहां पे एक सीमेंट की जो गाड़ी नजर आ रही है।

दो चेयर आगे लगे हुए हैं ऊपर जो कांच का शीशा रखा हुआ है एक लैपटॉप पड़ा है।

और ऊपर जो वाइट पेंट नजर आ रहा है।

जहां एक बहोत बड़ी मिठाई की शॉप है।